यख मा जी एक बड़ी बारिकू मैदान करा यख मा जी एक स्टेडियम करा लगण लग्युं यख मा जू छ क्रिकेट का मैच होंदा छन यख भीतर कई सारा लोग छन ये स्टेडियम मा जी दिखेण लग्यां।

यी एक बड़ी बारीकी नदी करा। यख मा जी यी नदी त गढ़वाली मा जी गाड भी बोल्दन। यख साइड फुण कई सारा बड़ा-बड़ा मोटा-मोटा डुंगा छन रख्यां यू डूंगा त गढ़वाली मा जी लोढ़ा बोल्दन।

यख मा जी एक बड़ी बारीकी नदी करा यख मा जी नदी ते गढ़वाली मा गाड़ भी बोलदान यख मा जी गाड़ का किनारा कई सारा बड़ा-बड़ा ड़ूंगा छन रख्यां।

यख मा जी लाल रंग का टिन का छपर छा दिखेण लग्यां यख मा जी कई सारा रंग बिरंगा झंडा कर छ दिखेण लग्यां यख मा जी हरयूं भरयूं घास छा यख मा जी कई सारा गमला छिन यख मा जी रेलिंग छन दिखेणी यखम बिजली कू खम्बा बिजली का तार पिछाड़ी मा जी हरयूं भरयूं दांडू छ।

सामने मा जी कई सारा रंग बिरंगा मकान करण दिखेण मकान लग्यां यख मा जी नदी मा जी एक नाव कर छ दुई छ नाव छन सफ़ेद रंग की नाव छन यख मा जी टीन का छप्पर भी छन दिखेण लग्यां यख मा जी बिजली का तार छन यख मा जी हरयां भरयां डाला छन हरयुं भरयुं बड़ू भारी कू पहाड़